विभिन्न रूप से दिखने वाली व्यवस्थित कार्य पद्धति है जिसका व्यवस्थित रूप से निर्माण किया गया है।

यह एक ट्रक का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जो की खेती के लिए कार्य कर रहा है तथा यह उर्वरक --

कमल की पंखुड़ियां के ऊपर रखी हुई महात्मा बुद्ध की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है जो कि सुंदर व्यवस्था का निर्माण कर रही है।

कुछ व्यक्ति लोग साइकिल की चीजों को ठीक भी कर रहें हैं तथा वहाँ --

कार्य करने वाली स्वयं प्रणाली है जो व्यवस्थित रूप से दिखाई --

तो विभिन्न अवस्था के आधार पर की जाने वाली व्यवस्था है जो एक प्राणालिका समय के रूप में है।

यह नृत्य कला करती हुई कुछ बालिका दिखाई दे रहीं हैं जो नृत्य कला से संबंधित कई तरह के --

कोशिश की गई है तथा वहाँ पे लोग आकर पूर्ण रूप से संयोजन मनोरंजन कर --

सभी मशीनरी पार्ट से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो व्यवस्थित कार्य प्रणाली के आधार पर --

सुव्यवस्थित प्रणाली है जो सुनियोजित रूप से की जाने वाली प्रणाली --

तथा उसके आस-पास के ट्रैक पे यात्रीगण रुक कर अपने ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं।

यह एक डी.जे. का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा डी.जे. में ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था भी है जिसके वजह से रात के वक्त में --

यह शादियों में तथा किसी प्रकार के आयोजनों में लगने वाले डी.जे. वगैरा होते हैं जो किसी भी जगह पर बजाए जाते हैं तथा वहां पर उस जगह की व्यवस्था का नियंत्रण रखा जाता है तथा कार में --

ये किसी प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर वहाँ पर की जाने वाली उस प्रतियोगिता में सम्मान के रूप में आकर्षित होना चाहते हैं ताकि वहाँ की व्यवस्था का निर्माण सही व्यवस्थित रूप से हो स --

यह पूल को संपूर्ण व्यवस्था करके यह दिखाने की कोशिश की गई है कि यह व्यवस्था कार्य प्रणाली के अनुसार सुयोजित होने वाली व्यवस्था है जिसमें सुव्यवस्थित निर्माण किया गया है इस व्यवस्था के --